टायर खोल दिया गया है और इसका इंजन भी खुल रहा है।

अर ओ ओ वर्धमन होटल है।

गेट के उप्पर कलाकारी की गई है।

ग्रीन केंपस क्लीन केंपस के नाम से एक बोर्ड बनाया गया है। यह बहुत ही क्लीन है। इसका पार्क भी बहुत सुंदर है।

नदी बहुत बड़ी है यह हिमा हिमालया से निकल कर --

ब्रह्मपुत्र की ओर जा रही है।

पारक का है। पारक हरा भरा है। पारक के अंदर घास पेड़ लगा रखे हैं।